बांधा गया है इन बगीचे में हरी हरी घास और बड़े-बड़े पेड़ भी नज़र आ रहे हैं।

पौधे भी नजर आ रहे हैं और पेड़ भी हैं।

आस पास में कुछ पर्दे लगे हुवे हैं।

इस रस्ते में बहोत बड़ा खंभा लगा हुआ है जिसके ऊपर--

सामने एक मूर्ति बनी हुई है जिसको फूलों से सजाया हुआ है।

लाल और पीले रंग से बहोत ही सुंदर कलाकारी की गई है।

इस तस्वीर मे लकड़ी के बहोत सुंदर सुंदर खाने बनाए गए है जिसमें अनेको प्रकार के गमले रखे--

यह एक मस्जिद की तस्वीर नज़र आ रही है।